यहां पर तीन तरीके की गोल्डन कलर की मूर्तियां हैं।

यहाँ पर कुमकुम हल्दी घी रखा हुआ हे.

और यहां पर पानी के इस्तेमाल के लिए बिंदली भी रखी हुई है.

ये इमली के झाड़ के नीचे खड़ा हुआ है।

यह एक छोटा सा किड्स रूम दिखाई दे रहा है.

यहां पर चिकन बिरयानी रखी हुई है.

यह एक सरकारी स्कूल दिखाई दे रहा है.

इसके ऊपर से गाड़ियां मोटर्स जाती है यहां पर पानी भी दिखाई दे रहा है.

यहां पर कई सारे लोग खड़े हैं.

दो जानवर यहां पर खड़े हैं।